घसीट के लेके जा रहे हो और कुछ महिला अपने बच्चों को उठा के ला रही है मतलब ये दो रास्ता आजू बाजू जानने के लिए बीच में पुल बनाया है।

एक लड़की ने पिंक ड्रेस पहनी है।